उनमे छोटे छोटे पौधे लगे है और कुछ पेड़ लगे हुए है।

ये बोहत बडी बिल्डिंग है इसमे बोहत सारी खिड़किया है और बालकनी है।

वाहन के पास कुछ व्यक्ति खड़े हुए है। रोड के सामने एक बिल्डिंग है इसमें बड़ा सा गेट लगा है अंदर कुछ व्यक्ति है।

रोड के पास बहुत सारे पौधे लगे है और बाउंड्री है बाउंड्री में एक बड़ा सा गेट लगा है बाउंड्री के अंदर बहुत सारी वाहन है और एक बड़ी बिल्डिंग बनी है।

बड़ा सा मैदान है मैदान में कुछ झोपड़ियां है और कुछ घर है आसपास पेड़ लगे हुए है।

झोपडी के पास एक जानवर खड़ा है के पास कुछ सामान रखा हुआ है।